इस पे लिखा हुआ है टूर एण्ड ट्रैवल्स ।

पायदान बिछा हुआ है।

यहां पर टेंट वेंट भी लगा हुआ है।

यह घर में कुछ गमला रखी हुई हैं।

और एक आदमी बालकनी में खड़ा है अपनी में और एक टंपू खड़ी हुई है और पीछे --

और यहाँ पे कुछ रैक रखी हुई है।

यह एक स्कूल का दृश्य है। जिसमें ड्रॉइंग प्रतियोगिता हो रही हैं। यहाँ पे --

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है।

इनमें से एक ट्रक है। ट्रक के पास एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक दुकान लग रही है।

एफ_एच_डी --